इस चित्र में लाल गुलाब--

इस चित्र में सेल का पोस्टर भी लगा हुआ है।

फर्नीचर कुर्सी सोफा सेट मैट्रेस गमला प्लास्टिक आदि मिलते हैं।

राष्ट्र ध्वज भीं इस चित्र में दिखाई दे रहा हैं।

ऑफिस का चित्र है इस चित्र में कु--

कुछ फ्लाइट भी दिखाई दे रही--

कुछ लोग भीं दिखाई दे रहें हैं।

टमाटर का है। कुछ टमाटर पूरे लाल है।

इस चित्र में बहोत सारे सामान खाने के रखे हुए--

इस चित्र में वॉलपेपर में पतियाँ गुलाबी कलर --

यह एक दुकान का चित्र है दुकान के मुख्य द्वार पर--

एक रिक्शा खड़ी हुई है एक बैटरी --

चित्र में कुछ बाइक भी रखी हुई हैं।

पर्चियां लाइन से रखी गई हैं।

इस चित्र में व्यक्ति के दोनों पैरों में चोट आई है।

विद्यार्थी माइक लेकर खड़ा हुआ है।

यह चित्र एक रेस्टोरेंट के कमरे का है।

एडवांस गैस्ट्रो लीवर एंड डायबिटीज केयर लिखा हुआ है।

चित्र में अशमघा जगह का नाम है।

केला काले अंगूर कीवी और नारंगी जैसे फल रखे हुए हैं।

यह चित्र एक घर का है घर का नाम--